मेडिकल में विभिन्न तरह की दवाएं मिलती हैं।

ये एक दुकान है जिसका नाम ब्रांड है।

जो की बहुत ही प्रीमियम रहता है।

ये एक ख़राब गाड़ी है जिस जो ये गेराज में खड़ा है ।

बच्चे आदि बहुत बुड्ढा-बुड्ढी सबके लिए यहाँ पे कपड़ा मिलता है।

और इस ब्रिज में अभी भी बहुत सारी गाड़ियाँ पार होती है और इस ब्रिज में कुछ नहीं हुआ है ।

ये पुराना नृत्य है शयद भरतनाट्यम कहा जाता है इ नृत्य को।